इस ब्रिज से कुछ गाड़ियां जा रही है।

बस के पीछे भी एक रेड कलर की बस है।

और बगल में मेडिकल शॉप है इसके बगल में एक और दुकान है जिसमें शटर डाउन हुआ है।

ये चित्र में एक बहुत बड़ी खेत है जिसमें हरे हरे धन उगाए हैं।

और खेत के उसपार बड़ी बड़ी पेड़ और घर भी बनी है और बहोत बड़ी पहाड़ भी दिख रही है।

चारों तरफ जंगल जंगल पेड़ है।

एक बहोत बड़ी दुकान है इसमें अमूल लिखा है अ दूसरी दुकान चश्मा की जिसमें ऑप्टिकल लिखा है।

इस चित्र में एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है।

येह चित्र में एक जामा मस्जिद है जिसमें बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा हॉल हैं जिसमें बहोत सारी लेडिज --

ए चित्र में बहुत बड़ा कंपलेक्स है।

हॉल है जिसमें बहुत सारे जिम की मशीन रखी गई है।

सामने एक बहुत बड़ी महाराजा सोफा है।

और कांच के गिलास की गेट बनी है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा हॉल है।

जिसमें बड़ी- सी मैदान दिख रही है और यह कॉम्प्लेक्स रोड के किनारे है बड़ी- बड़ी इमारतें बिल्डिंग भी दिख रही हैं।

और कार भी खड़ी है बाइक्स और एक्टिवा भी खड़ी हुई है।

गहने माले रखे गए है और बाहर भी --

इस चित्र में एक बड़ी सी कंपलेक्स है जिसमें बहुत बड़े कपड़े का शोरूम है और--

और सामने में एक बड़ी सी बिल्डिंग भी है बड़े बड़े पेड़ भी हैं।